बोड़ा में चावल भी रखा हुआ नजर आ रहा है।

और शोरूम के बाहर एक बाउंड्री है जिसका कलर व्हाइट है।

इस बैंक के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है।

यह मैरेज हॉल फूलों से सजाया हुआ नजर आ रहा है।

और आसमान भी दिखाई दे रहा है।

इस रोड के बगल में बड़ा सा अपार्टमेंट बना हुआ है।

और आसमान भी दिखाई दे रहा है।

और यह टुक टुक के पास एक लेडीज और एक आदमी खड़ा है।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

इस पेट्रोल पंप में कुछ आदमी लोग नजर आ रहे हैं।

दोनों आदमी शट पहना हुआ है।

सीलिंग में पंखा भी लटका हुआ है।

इस शोरूम में एक बुलेट को जैक से उपर उठाया हुआ है।

इसमें कुछ आदमी लोग हैं।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

और एक बड़ा सा ट्रक भी खड़ा है।

इस काउंटर के अंदर छोटे छोटे डब्बे में सामान रखा हुआ नजर आ रहा है।

जिसके अंदर एक आदमी खड़ा है।

और गाय का गर्दन में जोरंडी बांधा हुआ नजर आ रहा है।

इस दृश्य में एक मैदान का चित्र है इस मैदान के बगल में एक बड़ा सा बिल्डिंग है।

इसके बाहर बहोत सारे खूंटे खंबे बंधे हुए नजर आ रहे हैं।

इस मछली बाजार में बहुत सारे मछली बिक रहे हैं।

इस गली में एक आदमी दूरबीन कैमरा लिए हुए खड़ा है।

और एक स्कूटी और बाइक भी लगा हुआ है।

हर आसमान भी दिखाई दे रहा है।